इसके पीछे कुछ कुरकुरे और--

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट की है।

यह पिक्चर एक मछली मार्केट का है।

नीचे की साइड टाइस भी लगा हुआ है।

इसकी दीवार वाइट कलर की है।

इसमें एक इलेक्ट्रिक पोल भी नजर आ रहा है।

यह पिक्चर एक स्कूल डांस परफॉर्मेंस की है।

जिसमें पानी स्टोर्ड है।

इसमें कुछ वाहन भी दिख रहे हैं।

इसमें कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

ऊपर की साइड हाईवे भी निकला हुआ है।

इसके चारों तरफ वुडेन टाइस हैं।

इसमें दो वाहन भी हैं।

यह पिक्चर एक एनिमल हॉस्पिटल की है।

किड्स के कपड़ों की दुकान की है।

और नीचे भी लगी हुई है।

इसके बाहर काफी सारी बाइक्स दिख रही है।

इसमें कुछ पेड़-पौधे भी हैं।

और इसमें स्विच बोर्ड भी दिख रहा है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इसके बाहर दो व्यक्ति--

और कुछ वाहन भी हैं।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट की है।

स्लाइडिंग झूले की है।

जिसमें काफी सारे झोले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।

काफी सारे घर दिख रहे हैं।

एसी भी लगी हुई है।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

घास भी उगी हुई है।

और पीछे एक घर भी दिख रहा है।

झूले भी दिख रहे हैं।

इसमें कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

बैलूंस भी नजर आ रहे हैं।

वाइट कलर की है।

खिड़कियां भी दिख रही है।

जिसमें इंडिया बैंक --

बैंक भी है इसके बाहर काफी सारी गाड़ियां और कुछ व्यक्ति भी दिख रहे हैं।

इसमें दो गार्ड्स भी हैं इसके बाहर काफी सारी गाड़ियाँ भी हैं।